लगता है इन्हें देखने में इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तब जाके इनका शरीर इतना बढिया हुआ है और ये आपस में किसी साइन को एकता को प्रतीक कर रहे हैं।

यहाँ पर ये चर्च के बाहर लोग बाग खड़े हैं और यहाँ पर देखिये ये कितनी अच्छी डेकोरेशन वगेरा चल रही डेकोरेशन हुई भी है और यहाँ साथ में यहाँ पर खाना वाना थोड़ी देर में होएगा अन्दर कोई फेस्टिवल --

यहाँ पर देखिये पीछे फव्वारा भी है फव्वारे में पानी चल रहा है और लाइटनिंग ग्रीन लाइट पड़ रही है तो और बढिया लग रहा है यहाँ पर लोग बाग अभी घूम रहें हैं।

यहाँ पर लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। रोड पर खड़े हैं कि कब ये बैंक खुले और कब हम यहाँ पर ये पैसे जमा करें।

यहाँ पर यह फुल भरा हुआ है यहां पर कितने सारे लोग बैठे हुए हैं और आगे यहाँ पर पादरी वगैरह खड़े होकर इन्हें बहुत सी चीजें समझा हम जा रहे हैं कितना बड़े --

गाईस यहाँ पर ये फलों की बहोत बढियां स्टेशनरी वगेरा है। यहाँ पर देखिये कितनी बढियां बढियां अच्छे स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल रखे गए हैं। सेब ऑरेंज और पाइनएप्पल वाटरमेलन कितने बढिया लग रहे हैं देखने में और बहुत बढिया सा --

देखिए गाइस ये बड़ी किराना स्टोर है।

जिसने भी ये बनाया है बहुत ज्यादा टैलेंटेड आदमी है बहुत ज्यादा मेहनत करी है उसने।

यहाँ पर देखिए वाइट बोर्ड भी है जिसे हम मार्कर से यूज कर सकते हैं और ग्रीन बोर्ड भी जिसे हम चौक से यूज कर --

इस लड़के ने कितनी ज्यादा ओसम अपनी फोटो खीचा रखी है।